और फूलों से सजा हुआ है कुछ गमले भी रखे हुए है।

फ़्लोअर पे बहुत सारे कलरफुल पॉट रखे है इसमे पिंक कलर का है ब्लू कलर का है।

और वहाँ पे सेंट का चेक उप कर रहे है अल्ट्रा साउन्ड कर रहे है कुछ लोग पीछे खड़े है जो मशीन की तरफ देख रहे है।

और लाइट्स भी लगे है और मोठे मोठे लाल रंग के पाइप्स भी लगे हुए है बॉईस अटैच है।

और बहुत सारे लोग जिम के रहे है और जिम मे एल एल_ ई_ एल_सी_डी भी रखी हुई है।

और एक लेडीज है जो कमर पे पट्टी बांधे हुए है और वो डंबल उठा रही है।

और बच्चे शुज पेहने हुए है कलरफुल ।

और फ्लावर बना हुआ है रेड कलर का दुकानों मे बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।

यहाँ सामने मुझे अ जमीन पे खड़े कुछ लड़के दिख रहे है।

यहाँ सामने मुझे ग्राउंड दिख रहा है और एक कांच का बना हुआ गेट बाउंड्री दिख रही है।

का वो ऑटो दिख रहा है पेड़ पौधे है।

यहाँ मुझे ग्राउन्ड दिख रहा है और ग्राउन्ड मे बहुत सारे पेड़ पौधे है।

और फॅन लगा हुआ है ए_सी लगा हुआ है और कुछ छोटे छोटे से रैक बने हुए है।

ये घर मे बॅनर लगा हुआ है जिसमे मे लिखा है घर आँगना--

और मशीन रेड कलर की है और ऑटो पे ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और उनके हाथ मे कुछ लोहे से बना हुआ रैक का स्टैन्ड लिए हुए खड़े है।

और इमारते बनी है साइड मे और बहुत सारे पेड़ पौधे है कुछ लोग देख रहे है।

और बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स रखे हुए है जिसमे फूल लगे हुए है।

कुछ बच्चे भी है सामने येल्लो कलर की वॉल है।

रॉड मे वेट लगा हुआ है और वो व्हाइट कलर की ट -शर्ट पहना है रेड कलर की पूरी मॅट बिछी हुई है।

यहाँ सामने मुझे बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के सामने बड़े बड़े पेड़ है बिल्डिंग मे बहुत सारी विंडो है।